इस फोटो में हमें एक मोर दिख रहा है।

यह मोर नीला और हरा रंग का है।

मोर के पंख बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं।

पीछे बहोत जंगल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक रिसॉर्ट दिख रहा है।

हमें एक ब्लू रंग की गाड़ी दिख रही है।

इस फोटो में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

नीचे भी बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यहां सीमेंट का काम हो रहा है।

इस फोटो में हमें एक दुकान दिख रही है।

यह एक लजीज पिज्जा का शॉप दिखाई दे रहा है।

यह एक सिरी दिखाई दे रही है।

ये सिल्वर कलर का है।

यहां कुछ छोटे छोटे मछली भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे इंसान भी मछली खरीद रहे हैं।

ये घर के आगे दो बाइके रखी हुई है।

यहाँ बहोत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे डम्बल रखे हुए हैं।

सभी ने स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं।

यहां पर टायर से सोफा बनाया गया है।

इस फोटो में हमें एक जेरॉक्स की दुकान देख रही है।

पीछे जेरॉक्स लिखा हुआ है।

एक बरी गच्छी दिखाई दे रही है।

वहीं कुछ झंडे दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें लेफ्ट साइड में एक कच्चा घर दिख रहा है।

ये घर एक फ्लोर का है।

यहां हमें रंग बिरंगे चेयर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे छोटे छोटे घर दिख रहे है।

एक बूढी औरत भी दिख रही है।

एक और इंसान भी दिख रहा है।

सभी घर की छत ब्लू कलर की है।

इस फोटो में हमें एक पार्क जैसा दिख रहा है।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

में यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान दिख रहे हैं।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

यहां हम लोग को चार इंसान दिखाई दे रहा है।

एक पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।